और एक स्टेचू के हाथ में लकड़ी दिए है स्टेचू वॉक के जैसे --

कलर कलर के फूल है वाइट येल्लो और रंग बिरंगे और फूल है वाह ले फूल लेने में के लिए बहुत गर्दी हुई है।

कुछ झाड़ में वाइट कलर के फूल आए है और घास बहुत सारी लगी है।

बहुत घना जंगल है जिसमें बहुत सारी झाड़ झाड़ी दिख रहे है और उस पहाड़ी का --